इस फोटो में दिख रहा है कि यहां पे एक स्कूल है जिस स्कूल के अंदर टीचर खड़ी है और बच्चे लोग पढ़ रहे हैं।

और यहां पे साइड में एक मूर्ति भी है।

ऊपर बहोत सारे फूल से डेकोरेशन किया गया है और आसपास में कुछ लोग भी है।

जोकि बाल कटा रहे है और एक पीला कलर का टी शर्ट पहना हुआ लड़का है।

इस लड़की का ब्लैक कलर का टी शर्ट और नीचे लहंगा पहनी हुई है।

यहां पे दिख रहा है कि कुछ महिलाएं हैं जो की भरतनाट्यम कर रही हैं।

कपड़ों के अंदर ट्राउजर टी शर्ट और बहुत सारे प्लास्टिक के अंदर रखे गए हैं।

और साइड में बहोत सारे कुछ कुछ जनरल स्टोर के समान है।

साइड में बहोत सारे मोमबत्तियां जला रहे हैं और लाइटे जल रहे हैं।

और एक लड़का खड़ा है जो की मैरून कलर का शर्ट पहना हुआ है और ब्लू कलर का जींस और हाथ में घड़ी भी पहना हुआ है।

ओपनिंग के साइड में बहोत सारे फूल लगाए गए हैं और ऊपर एल_आई_सी लिखा हुआ है।

फोटो में दिख रहा है कि एक घर है जिस घर के ऊपर लाल कलर से आर्या ट्रेडर्स लिखा हुआ है।

फोटो में दिख रहा है कि एक गेट है जो की शीशे का खिड़की लगा हुआ है और स्टील का गेट है।

नीचे मार्बलस बिछाए गए हैं और एक कपडा भी है वाइट कलर का।

जिस डब्बे के ऊपर एक्साइड लिखा हुआ है।

फोटो में दिख रहा है इस कि एक बड़ा सा कमरा है जिस कमरे के अंदर ड्रोन रखे गए हैं।

सूटकेस रखे गए हैं और एक पंखा भी लगा हुआ है पंखे के साइड में लाइट्स लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे स्कूटिस लगे गए हैं।

बलूंस का कलर वाइट ब्लू और ऑरेंज है।

यह पूरा कवर किया गया है प्लास्टिक से और उसके पीछे भी एक छोटा सा साइकिल है।

और लाइटें लगाए गए हैं नीचे गद्दा बिछाया गया है और तकिया भी है।